ब्लैक पेंट पहने है। एक ग्रे शर्ट और क्रीम पेन्ट पहने हैं।

उसी के सामने एक बड़ा सा पेड़ हैं जो की ग्रीन कलर का है। आसमान जो है। ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। नीचे की जमीन जो है वो ब्राउन कलर की है।

सामने जो है रिक्शा की शॉप है। एंड साइकिल स्टोर है। इसका जो बोर्ड है। वो ब्लू कलर का है। नीचे इसका जो मेन गेट है। शटर है। वो पर्पल कलर का है।

सामने के तरफ एक बोर्ड लगा है जो कि एल्लो कलर का है उस पर विश्वकर्मा आई_टी_आई_टी _आई लिखा हुआ है।

नीचे जो गेट है उसमे भी बैनर लगा हुआ है वो ऑरेंज और पिंक कलर का है।

एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कि व्हॉइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहने हैं उसी वहीं साइड में एक मेंबर खड़े हैं।

उसी के जस्ट सामने दीवार है वो रेड कलर की है। मैन गेट का कलर ग्रीन है। वही पीछे एक ट्रक खड़ा है। येलो और लाइट कलर में।